शायद तिरछे मे ली गई है ज्यादा समझ मे नही आ रहा है नई सी तिरछी मेने तार के खंबे भी दिख रहे है बहोत सारी खिड़किया दिख रही है जिस म मे खिड़कीओ मे शीशे का इस्तमाल किया किया गया है दरवाजों मे--

यह एक बच्चों के खेलने का मैदान है जहाँ पर बोहत सारे बच्चे दिख रहे है लंबे लंबे पैड भी दिख रहे है बहुत सारे बच्चों की कुर्सियां भी दिख रही है कुछ छोटे बच्चे दिख रहे है कुछ बड़े बच्चे दिख रहे है।

ऐ ऐ बौद्ध भगवान की तस्वीर हैजहाँ इसको काले उ धातु से बनाई गई है जो शायद जिस चीज़ से भी बनाई गई हो ।

मिर्ची ज्यादा बड़ी नही है भिंडी भी दिख रही है प्याज़ भी दिख रही है और शायद कुछ और दिख रहा है जो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है की क्या है--